अंदर में ना एक बड़ा सा घर है साथ में ईटा का पता नहीं ईटा के अंदर --

पेट्रोल पंप है वहाँ पे न वहाँ पे सब आदमी तेल भरवा रहे है वहाँ बहुत सारा कार बाइक टम्पू है।

नया गाड़ी का चक्का वो सब बहुत चीज है वहाँ पर बहुत --